इस ग्राउंड में एक स्टेज जैसा बना हुआ है।

तालाब के आगे में बहुत सारे लड़के खड़े हैं।

चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एरोप्लेन में सीढ़ियां भी बनी हुई है।

एयरोप्लेन के पास बहोत सारे व्यक्ति हैं।

रोड के किनारे भी छोटे छोटे घास और शो प्लांट लगी हुई है।

यह एक खेत का दृश्य है खेत में नीचे टमाटर का गांछ लगा हुआ है।

नदी के इस साइड बहोत सारा छोटा छोटा घास है और छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं।

यह एक खेत खलिहान का दृश्य है चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ग्राउंड में नीचे छोटे छोटे घास हैं ग्राउंड में बहुत सारा नारियल का पेड़ भी लगा हुआ है।

चारो तरफ से करकट लगा हुआ है।

में बहुत सारे वस्तुएं और घास वास भी जम गए है।

ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है बाउंड्री का कलर ग्रे है बाउंड्री के बाहर घर जैसा बना हुआ है।

ग्राउंड में दो पीले रंग की बस भी है।

यह एक सैलून का दृश्य है सैलून में चार व्यक्ति हैं।

एक पानी का जार भी रखा हुआ है टूल के ऊपर।

ग्राउंड में दो व्यक्ति और एक बच्चा भी है।

कॉरिडोर में एक दरवाजा भी है दरवाजे का कलर ब्राउन है।

इस अलमारी में बहोत सारे वस्तुएं रखे गए हैं जैसे बहोत सारे बड़े बड़े डिब्बे और भी छोटे छोटे डब्बे और भी बहोत सारे वस्तुएं रखे गए हैं।

इसके दीवार पर लाइट में जल रही है और नीचे में टाइल्स लगा हुआ है।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

उसमें खिड़की और दरवाजे भी बने हुए हैं।

अलमीरा के अंदर दो बल्ब भी लगे हुए हैं।